और कुछ छोटे पेड़ लगे दिख रहे हैं ।

दिवार पर क्राइस्ट का चिन्ह बना हुआ है उसके ऊपर ईशु मसीह लटके हुए है।

अ क्राइस्ट के चिन्ह के दोनों तरफ एक -एक बोर्ड लगा हुआ है और दो और नीचे क्राइस्ट के चिन्ह दिख रहै हैं।

और एक घर बनता हुआ दिखये दे रहा है जिसकी आधी दिवार बन चुकी है।

जिस पर दुल्हन लिखा हुआ है एक और निचे बोर्ड लगा हुआ है जिसपर म्यांमार लिखा है।

और दीवार के बाजू में तीन सीट का बना हुआ कुछ दिख रहा हैं ।

कुछ दुकाने बनी हुई है स्ट्रीट लाइट लगी हुई है बस स्टैंड में एक बस खड़ी हुई है जिस पर छाबड़ा लिखा हैं ।

मुझे एक बगीचा दिखाई दे रहा हैं ।

सड़क के किनारे के दूसरे तरफ कुछ लोहै के खम्बे लगे हुए है कुछ खुजर के पेड़ लगे हुए है।

मुझे एक बड़ा सा पार्किंग एरिया दिखाई दे रहा है उस पार्किंग एरिया मे--

बूस्ट के पाउच लटके हुए है और चिकन मसाला के पाउच लटके हुए है होर्लिस के पाउच लटके हुए है ।

मुझे एक बुल्डिंग दिखाई रही है जिसमे शासकीय लोचन प्रसाद पांडेय महा विद्यालय सरगढ़ --

एक लोहै का बोर्ड रखा दिखाई दे रहा है एक आदमी बैठा दिख रहा है एक गाढ़ी रखी है।

और सबसे ऊपरी दिवार पर एक क्रॉस का चिन्ह बना है वह डरने--